सामने में एक टी_वी भी लगा हुआ है।

और कई सारे बिल्डिंग्स बना हुआ है।

ऊपर में छोटे छोटे रंग बिरंगे फ्लैगस भी टंगा हुआ है और बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहा है।

सामने मे एक बड़ा सा बिस्तर भी रखा हुआ है।

और बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

कोने में एक इलेक्ट्रिक पोस्ट भी लगाया हुआ है।

टेबल के नीचे में गैस सिलेंडर भी रख रहा है।

सामने में एक बड़ा सा बिस्तर भी लगाया हुआ है।

मुझे इस तशवीर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का दुकान दिखाई दे रहा है।

आस पास बहोत सारे इलेक्ट्रिक पोस्ट भी लगा हुआ है।

नीचे जमीन पर चोकटा भी रखा हुआ है।

सामने में एक गेट भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में स्टेज दिखाई दे रहा है नीचे जमीन पर ग्रीन कलर का कॉरपोरेट बिछा हुआ है।

कोने में एक बड़ा सा साउण्ड बॉक्स भी रखा हुआ है और ऊपर में बहोत सारा ट्यूबलाइट्स लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में स्टील रोड दिखाई दे रहा है।

सामने में दो बच्चा खड़ा है उनकी शक्ल पर ब्लर किया हुआ है।